बोहोत बड़ा नजारा दिख रहा है। यह नाला है की नदी।

खंडर के यहाँ कोई महलों और हेल का --

बड़ा सा गार्डन दिख रहा है।